ऊपर ए.टी.एम. में अंदर नीले रंग की दिवार दिखाई दे रही है ऊपर छत नज़र आ रही है छत पर लाइटे लगी हुई है लाइटों का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है।